सामने बहुत घनघोर पेड़ बानी स| ओ पेड़ के पीछे मकान भी बाड़ी स| लइका लाल रंग क टोपी पहिनले बा| आसमानी रंग के--

पेड़ भी बान स हरा हरा| एगो नाला भी बहल बाटे जवने में पाइप लगल बा| काला गेट बाटे आ इ मकान तीन तल्ला बिया|

ई एगो मस्जिद हवे मस्जिद के ऊपर माइक भी लगलबा। एगो तिरंगा लगल बा। मस्जिद क रंग सफ़ेद बा। ओकरे बगल में एगो बाउंडरी चललबा।

और एगो पोस्टर लगल बा में चार गो लइका मेहरारू बा--

बगल में अल्युमिनियम का गेट दिखता और छत पर रैलिंग लगल बा। ओकरे बगल वाले मकान में एगो पोस्टर भी लागल बाटे। वो पोस्टर पे कुछ लिखल बा।